शटर काले रंग की दिखाई दे रही है।

जिसमे बहोत सारे पर्दे लगे हुए है गुलाबी पिले और नीले रंग के--